कुछ ऑरेन्‍ज कलर के है जिसके आगे टीन डले हुए हैं एक ग्रीन कलर का है एक लेडीज दिख रही--

व्हीलचेयर डली हुई हैं जोकि फ्लेक्स बीच है और--

पहना हुआ है और वाइट कलर की टीशर्ट पहना हुआ है ऊपर काफी सारे लोहे के ऊपर लोहे के जाल के ऊपर काफी सारे झंडे लगे हुए हैं एक स्कूटी का पीछे का पोर --

तिन के नीचे टंगा हुआ है एक मोत्र रखी हुई है एक जाल लगा हुआ है ब्लैक और रेड कलर का--

घर में एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि लकड़ी के फ्लेम के ऊपर लगा हुआ है और वो सामने बिल्डिंग है जो कि येलो कलर की है और काफ़ी कम कपडे भी टगे हुए --

एयर टाइप रखे हुए है जिसके ऊपर काफी सारे फरौर फ्लावर पॉट्स रखे हुए है और--

और बेड के ऊपर एक टॉवल रखी हुई है दो रखे हुए है एक बैग रखा हुआ है बैग के बराबर--

बोर्ड लगे हुए हैं जिसमे वायर कनेक्शन हैं और--

दो बन्दे खड़े हैं जो कि एक नीले कलर टी-शर्ट मे हैं और एक ग्रीन --

काफी सारे सामने काफी सारे फूल भी टंगे हुए हैं झालर--

एक बिल्डिंग है पीछे जिसमे डिज़ाइनिंग डली हुई है और रेड कलर की नीचे डिजाइन है ।

और एक बंदा अपने लेस बांध रहा है ब्लैक कलर की टी शर्ट मे पीछे काफी सारे लोग खड़े है ।

टेबल लगी हुए और सामने कबर्ड बनने हुए हैं काफी सारे अ --

एक टेबल लगी हुए हैं एक चेयर राखी हुए हैं दो--

लगे हुए है काफी सारे लोग खड़े हुए है काफी सामने एक साइकिल खड़ी है जिसमे थेला टंग रहा है ।